इस तस्वीर में दिखाया गया है यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान नजर आ रही है।

ये सामान ओल्ड टाइप का मकान बनाया हुआ है जिसमें एक हर क--

ट्रॉफियां रखी गई हैं जो की प्रिंट नहीं हो रखी हैं।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

इस तस्वीर में दिखा रखा यहां पे एक--

में एक एल_इ_डी वगैरह भी रखी हुई है।

इस तस्वीर में दिखाए गए यहां पे एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल की फोटो नीचे से खींची गई है।

और दीवार खीच रखी है रेडीमेड --

अलग अलग है कुछ सामग्री आइटम रखे गए।

इसमें कुछ गाड़ी वगैरा भी नजर आ रही हैं।

वे काच वगैरा ओ रखी है कुछ पाने में भी--

जो है कट वगैरह हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि आप करें पर --

आया हुआ है ए_सी रिपेयर करने के लिए।

इस तस्वीर में दिखाया गया है यहा पे माइक में कुछ लोग ये बोल रहे--